तस्वीर एक मेडिकल कॉलेज के बिल्डिंग का है।

ये तस्बीर एक फ्लाईओवर का है जो के नेट और लोहे से बना हुआ है।

एक बुद्ध मंदिर है जिस के बीच में एक बड़ा-सा सोने का बुद्ध रखा हुआ है।

इसके आस-पास चार बुद्ध और रखे हुए हैं।

गेट के सामने एक बड़ा-सा रोड भी है| इस रोड पर ऑटो चल रहा है।

एक बुध्दिस टेम्पल का तस्वीर है जिसकी दीवारों पर बुद्दहास के पिच्चर बने हुए है।

ट्रेडिशनल बिल्डिंग है जिसके आसपास गार्डन है।